यहां से इसको उतरने के लिए एक सीढ़ी भी बनाई गई है और वहां पे घर दिख रहा--

यहां पे भी एक अ घर जैसा लग रहा है लेकिन जिसको शॉप बनाए गए हैं।

शॉप लग रही है वहां पे और साइड में भी एक घर दिख रहा है जिसको ग्रिल पे कुछ कपड़े--

ये फैन दो तीन लगे हुए हैं जो जिनकी जिनकी जो पाइप है वो बोहोत लंबी है और ये नीची नीचे तक फैन आए हु --

यहां स्प्रे है कॉम्ब वगैरा भी है और यहां ब्लैक कलर साइड में एक ब्लैक कलर की कुछ चीज दिख रही है।

वो टॉवर भी दिख रहे हैं और आसमान पे बोहोत बादल छाए हुए हैं।

वहां एक बंदा बैठा हुआ है उस दीवार पे से वाइट कलर का कुछ पहना हुआ है।

आधे मोबाइल लेके फोटो ले रहे हैं और आधे ऐसे देख री आ --

आज और ऊपर एक बोर्ड भी लगाया हुआ है जिस पे लिखा है वेलकम टू टूरिज्म कैपिटल ऑफ़ महारास--

ये एक रेलवे स्टेशन है जहां पे बहोत सारे लोग वेट कर रहे हैं और वहां ऊपर छत वत लगाया हुआ है।

उसके पास एक बंदा खड़ा है जिसने पिंक कलर की शर्ट पेहनी हुई है।

ये एक शॉप है जिसका नाम करीमनगर डायरी डिपार्टमेंट डायरी पार्लर है।

वे बादल छाए हुए हैं और यहां पे कोई दिखाई नहीं दे रहा--

यहां पे भी कोई पूजा जैसी हो रही है जैसे फंक्शन है भोजन का।

बंदा खड़ा है इनमें जो कुछ प्रोजेक्ट दिखा रहा है इनको जिसने रेड कलर की शर्ट पहनी हुई है और बाकी सब देख रहे है इसकी तरफ।

ने हाथ ऊपर उठाया है। वो भी कुछ बोल रहा है इसके बारे में और इनके सामने बिसलेरी बोटल भी है।

एक रेडीमेड गारमेंट्स शॉप लग रही है जिस पे जिसका नाम लिखा है मम्मी डैडी --

नीचे इसमें उतना गास नहीं है अभी ग्रीनरी उतनी नही है।

और इसको सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही है और यहां साइड में एक बाक बाइक दिखाई दे रही है।

के कुछ दिखाई दे रहा है और स्टॉल के बहोत सारे कलर दिखाई दे रहे हैं जैसे ब्लू हैं ब्राउन है ऑरेंज है स्काई ब्लू है।

पीछे दीवार का कलर भी व्हाइट कलर का है और इस व वॉल पेपर का कलर ब्लू कलर का है ग्रीन कलर का है फ्लोवरल पेंट में है।

सड़क के साइड में ये एक दरियाव जैसा लग रहा है और वहां पर दो बाइक खड़ी हैं।

ये एक शॉप है जहां पे कुछ खाने का सामान भेज रहे हैं

ग्रिल में से आगे ग्रीनरी भी दिख रही है जैसे पेड़ वेड लग रहे हैं।

घास मुरझाया हुआ जैसा है और ऊपर इसमें वायर दो भी दिख रही है।